पिक्चर में हमें एक व्यक्ति मिरर सेल्फी लेते हुए नजर आरहा है।

पिक्चर में हमें एक टॉय ट्रेन दिखाई गई है।

पिक्चर में दिखाया गया दृश्य किसी कैफे का है।

पिक्चर में दिखाया गया दृश्य किसी पहाड़ी क्षेत्र का है।